जहाँ बहुत से लोग अ बहुत से मजदूर कार्य कर रहे हैं और बहुत सी गाड़ियाँ भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं।

यहाँ पे बहोत सी कुर्सियाए भी लगाई गई हैं।

यह तस्वीर एक ट्रेवल बस की है जो की सफ़ेद और ऑरेंज कलर की है जिसका नाम परफेक्ट है।

और कई लेडीजे यहाँ भगवान की पूजाएं कर रही हैं।

और म भगवान को बहुत ही सुन्दर मुकुट पिन्हाया गया हैं।

और ह बालाये भी पहनाई गयी हुई है।

यह तस्वीर एक मस्ज़िद की है।

और अ बोहोत ही बड़ा कॉलेज भी यहाँ बनाया गया है और इसके आस-पास बोहोत ही पेड़ लगे हुए हैं।

यहाँ पर लाइटें भी लगवाई गयी है।

और नीचे ड्रॉज भी लगाई गयी है।